दू गो ट्रैक्टर लगा हुआ है जिसका रंग लाल है नाम इसका महिंद्रा छ सौ पाँच है और ढाला-उला रक्खा और यहां पे लकड़ी का समान है यहां पे --

हरा नारियल ओरियल बड़ा वाला छोटा वाला सब है पन्नी हरा कलर का रखा हुआ ट्रे में सब रखा हुआ है पेपर से सजा--

ये सब झंडा है घर व्हाइट कलर से पेंट है और उसका पिलर रेड कलर से पेंट किया गया है और ऊपर बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है छाया दे--

शर्ट है वाइट कलर का पेंट है ब्लू कलर का हाथ में घड़ी पहने हुए हैं।

यहां पे देखिए एक झरना बह रहा है उस साइड बहोत सारा जंगल है पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं।

इधर फील्ड कितना बड़ा है उधर पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं।

यहां आप देखिए पाइप जॉइंटिंग सब रखा हुआ है तार तूर सब रखा हुआ है यहां पे।

नीचे तीन स्टूल रखा हुआ है एक बच्चा खड़ा है नीचे--